दिख रही है गाडी का सिर्फ एक टायर दिख रहा ये थोड़ी दूर एक कार रखी हुई और बडीसी बिल्डिंग दिखाई दे रही पानी की टंकी दिखाई दे रही एक मोटर साईकल खड़ी है।

रेक पे बहुत सारे सजे हुए कपड़े रखे हुए नीचे भी कपड़े फैले हुए दिखाई दे रहे है एक पुतले को लाल कलर के लड़को के कपड़े पेहना के दिखाया गया है और लाइट जल--

तरफ फिसल पट्टी पे एक बच्चा फिसलते हुए दिखाई दे रहा एक लड़की दूसरे तरफ दिखाई दे रही बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दे रहा थोड़ा घर का नज़ारा भी दिखाई दे रहा है।